दो गेट लगे हुए हैं गेट के पास दो आदमी और एक महिला खड़ी--

चित्र में हमें चारबाग का स्टेशन दिखाया गया है।

दो आदमी खड़े हुए हैं एक कुर्सी भी रखी हुई है।

नदी के अंदर लंबे लंबे पत्थर भी रखे हुए हैं।

चित्र में हमें बहुत सारे बकरे दिख रहे हैं।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

चित्र में हमें एक कमरा दिखाया गया है।

चित्र में हमें एक बेकरी दिखाई गई है।

चित्र में हमें एक क्लीनिक दिखाई गई है।

ठेले पर फलों की दुकान लगी हुई है और--

इस चित्र में हमें दो पत्थर दिखाए गए हैं पत--

इस चित्र में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

रेस्टोरेंट के अंदर हमें बहुत सारी कुर्सियां और टेबल रखी हुई दिख रही हैं।

हमें एक टेम्पू रोड पर खड़ी हुई दिख रही है और एक बिजली का खंभा भी लगा हुआ है।

लड़कों के ऊपर एक झूमर लगी हुई है।

मॉल के अंदर हमें बिस्किट चॉकलेट रखे हुए दिख रहे --